रोड के ऊपर दो गोल - गोल बनाई गई है। एक रेड एक ग्रीन ।

इस चित्र के अन्दर एक बडा सा ऑफिस नजर आ रहा है और उस ऑफिस का रूम में टेबल्स लगाये गए हैंऔर ऑफिस का कलर है वाइट और टेबल का कलर है चोकलेटी ब्लैक --

इस चित्र के अन्दर एक पुराना सा मज्जिद नज़र आ रहा है। अ उस मज्जिद के बाहर ग्रोंड छोटे झाड़ा भी नज़र आ रहे हैं और मज्जिद का कलर एक बिस्कीट --

इस चित्र में एक इंसान गुफा के अन्दर जा रहा है ओए इस गुफा में बहोत सारे बंदे नजर आ रहे है और अँधेरा भी न --

और उस मंदिर का कलर है वाइट और सीमेंट रेड और एक झंडा भी नज़र आ रहा है।

यहाँ पर एक मैदान का चित्र दिखाया गया है मैदान में बहुत सारे पीले फूल लगाये गए हैंऔर यहाँ पर हाथियाँ नजर आ रहे हैं यहाँ पर पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।